यह एक ऑफिस है। यह ऑफिस में एक छोटा सा लाइब्रेरी भी है। जहां पर बहुत सी किताबें रखी गयी है। यह ऑफिस में बहुत से बैठने के लिए स्टील की चेयर लगी हुई है।

यह एक नदी है जो नदी पूरी तरीके से सूख चुकी है मात्र एक स्रोत है जिस में पानी हल्का-हल्का बहता है यह नदी में बहुत बालू है ।

यह एक केक है यह केक के बीचों बीच किटकैट चॉकलेट सेलिब्रेशन चॉकलेट डेयरी मिल्क चॉकलेट ओरियो बिस्कुट जैसी चीजें चिपकाई गई हैं यह देखने मे सुंदर लग रहा है।